जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको घर दिख रहा है जोकि बोहत ही सुंदर घर दिख रहा है। चढाव दिख रहा है जोकि ऊपर जाते हुए दिख रहा है जोकि बोहत ही सुंदर लग रहा है। पीछे हमको पेड़ दिख रहा है जोकि बोहत ही प्यारा लग रहा --

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको ए.टी.एम. दिख रहा है कैनरा बैंक का ए.टी.एम. दिख रहा है जो कि नीला कलर का दिख रहा है इससे सफेद अक्षरों में बैंक का नाम लिखा हुआ दिख रहा है अघोरिया बाजार मुज़फ्फरनगर नीचे ए.टी.एम. है जो कि काला कलर का दिख रहा है।

इन मूर्ति ने मुकुट लगा रखे हाथ में सोना पहन रखा है गले में सोना पहन रखा है जो की नकली दिख रहा है हाथों में मालाएं पहन रखी है गले में नीचे लेडिसे दिख रही हैं जो कि पूजा करते दिख रही हैं जो कि बोहत ही अच्छी दिख रही हैं।

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हमको मूर्ति दिख रही है मूर्ति कांच के अंदर बंद दिख रही है।

ये मूर्ति किसी भगवान की नहीं बल्कि किसी योद्धा की भी नहीं किसी अलग ही प्रकार की मूर्ति दिख रही है जिसके हाथ में बीड़ा है जो की बजाते हुए दिख रही है।

गेट लगा हुआ है जो कि काला कलर का दिख रहा है नीचे कार दिख रही है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है सफ़ेद कलर की जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है।

जैसा कि हम देख सकते हैं। सामने हमको एक छत भरते हुए दिख रहे जोकि बोहत ही अच्छे लग रहे और बोहत ही सुंदर लग रहे। दो आदमी दिख रहे जोकि छत भरते हुए दिख रहें। जिसमें हमको सरिये लगे हुए दिख रहे जोकि बोहत अच्छे लग रहे और बोहत ही सुंदर लग रहे।